और दुकान से बाहर आने के लिए कुछ स्टैर्स है और बाहर एक हैन्ड वॉश के लिए सिंक लगा है और डस्टबिन रखा है।

नदी में एक बोट है जिसमे दो आदमी बैठे हुए है जो चप्पू चलाते हुए दिख रहे हैं उन्होंने लाइफ सेविंग जैकेट भी पहनी हुई--

और इनको एक आदमी खड़ा हुआ है जो इस रंगोली को जज करता हुआ दिख रहा है पीछे एक चैनल गेट है जो खुला हुआ है।